यहां पास में एक आदमी भी खड़ा नजर आ रहा है।

यहां एक लेडिस खड़े होकर कपड़ा पहन कर दिखा रही है।

और वहां एक टी_वी भी लगी हुई है।

मैं देख पा रही हूं यहां एक बड़ा सा मॉल है।

सामने एक बोतल में पानी भी रखा गया हैं।

होटल के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है।